यह एक टेंपो का दृश्य है तथा इस टेंपो के ऊपर शीशे पे माला लगे हुआ है जोकि गेंदा का फूल है ऑरेंज कलर ।

तथा यहां पे पेट्रोल पंप के कलर है व्हाइट और रेड एंड --

यह एक कूलर फ्रिज दुकान के अंदर का दृश्य है तथा यहां पे बहुत प्रकार की कूलर और वाशिंग मशीन और भी कई प्रकार के चीज यहां पे रखे हैं।

एक व्यक्ति है जोकि हाथ में झूला टांगें और पीला कलर का टी_शर्ट शर्ट पहने हुए हैं।

यह एक मैदान का दृश्य है।

यह एक पेड़ पौधे का दृश्य है छोटे छोटे।

लोहे भी बहुत सारे दिए गए हैं तथा इस तरपाल के ऊपर भी कुछ पेड़ पौधे उगते हुए दिखा--

यह एक पहाड़ का दृश्य है जिसके पहाड़ के ऊपर से पानी आते हुए दिखाई दे रहा हैं।

पानी कलर व्हाइट है और ऊपर में भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उगते हुए।

और यहां पे एक दो चेयर भी है जो लोहे के मदद से बना है।

यह एक लाइट का दृश्य है तथा यहां पर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

और यहां पे बहुत सारे व्यक्ति भी जाते हुए और कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कोचिंग का दृश्य है जो कि यहां पर एक सर है जो पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।